ये एक लाइब्रेरी है जिसपे बहुत सारी क़िताबे है बहुत सारी प्रकार की--

ये फोटो अंबिकापुर बस स्टैंड का है जिसमे बहुत सारी गाड़िया लगी हुई है बसे लगी हुई है।